सामने पेड़ भी लगे हुए है।

और यहाँ पर जमीन पर बहुत ज्यादा पत्ते भी गिरे हुए हैं।

लिखा बोर्ड पर एक हिन्दी में सैनटैन्सेस लिखे हुए हैं।

नीचे पानी बह रहा है और यहां पर बहुत बड़े-बड़े ।

ये एक जगह है जहां पर सामने--

ये एक जगह है यहां पर पाँच छह पेड़ है।

जहाँ पर सामने दो किताबों जहां पर सामने दो दुकाने है।

और बाहर बहुत ज्यादा पेड़ भी लगे हुए हैं और --